हॉस्पिटल के मुख्य द्वार पे लोहे का गेट लगाया गया है।

मैदान के आसपास कई सारे पेड़ पोधे और बड़े बड़े माकन दिख रहे है।